यहां पे साइड में एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है और ऊपर साइड बड़े शेल्व्स है।

यहाँ पे दुर में एक छोटी सी मंदिर दिखाइ दे रही है मंदिर के ऊपर--

और यहां पे बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं और यहां एक पंडित भी दिखाई दे रहा हैं।

बड़े बड़े लाईट्स हैं झूमर की लाईट्स है और यहां पे बहोत सारे--

और यहां पे ब्राउन कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है।

और यहां पे आदमी बच्चे की हेयर कट कर रहा है यहां पे बहोत सारे बड़े बड़े मिरर्स हैं।

कैश काउंटर है और यहां पे वॉल पे बहोत सारे फ्रेम्स है यहां पे एक बड़ी सी--

यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो फ्रूट खरीद रहा है यहां पे बहोत सारे--

यहां पे येलो और यहां पे ऑरेंज कलर के रेड कलर के बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे है।

और यहां पे ग्रील दिखाई दे रहा है। बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बड़ा सा मार्शल आर्ट क्लास दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक बड़ी सी मन्दिर दिखाई दे रही है।

और यहां पे ऑरेंज कलर के झंडे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे घास और यहां पे--

बाहर बगीचा दिखाई दे रहा है छोटा सा और यहां पे स्ट्रीट लाइट है बड़े बड़े खंभे हैं।

और यहां पर बहोत सारे लोग अलग अलग कॉम्प्लेक् में दिखाई दे रहे हैं।